वहां शेल्फ में दो साइकिल एक छोटी सी कार दिखाई दे रही है।

सभी के पास एक थर्माकोल का आइस बॉक्स भी दिखाई दे रहा है जिनमें मच्छियां रखी जाती हैं।

इस दीवाल पर रेड कलर का पेंट लगा हुआ है इस टीचर ने व्हाइट कलर का यूनिफॉर्म पेहना हुआ है एक फ्लावर पॉट दिख रहा है।

रंग बिरंगी फूलों से बैकग्राउंड में भी फूलों को लगाया गया है दो आदमी स्टेज पर खड़े हुए हैं एक--

बहोत अच्छी सजावट की है रंग बिरंगी फूलों से एंट्रेंस पर फोटो फ्रेम रखा हुआ है अंदर भी और फोटो फ्रेम्स हैं नीचे--

इसके ऊपर झंडा लगाया हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारे आइटम्स का खाना मिलेगा जैसे कि आप पोस्टर में देख सकते हैं होटल के बाहर एक कार और बहुत सारी बाइक्स खड़ी हुई हैं बहुत सारे झाड़ दिखाई दे रहे हैं।

और बहुत सारी चीजें शेल्फ में रखी हुई दिख रही हैं पेंस है बॉडीलोशंस है स्प्रे है पाउच है बुक्स है तरह-तरह के पेंस हैं कलर्स हैं स्केच पेंस हैं कलर पेपर्स बहोत सारी चीजें हैं।